और इसमें एक रेड कलर की मैट भी बिछाई गई है।

जिन्हें लेंटर पर लगाया गया है और उनके बीच में सीमेंट भरा गया है।

और जिसमें बहोत सारे रंग बिरंगे रंग फूल लगे हुए हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो चार मंजिला है इसके बड़े बड़े पिलर्स भी मुझे दिख रहे हैं और बहोत सारी--

कुछ लोग मुझे कॉरिडोर में घूमते हुए भी नजर आ रहे हैं।

मुझे यहां पे कुछ टेबल और चेयर्स भी नजर आ रहे हैं।

यहां पे मुझे कुछ लड़कियां डांस फ्लोर पे डांस करती हुई नजर आ रही है।

जहां पे एक बहोत बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है यू चाइना चाइल्ड आउट चाइनीस यहां पे मुझे बहोत सारा खिड़कियां और दरवाजे शीशे कि नजर आ रही है।

कुछ टेबल और चेयर अंदर लगे हैं जिनमें चाइनीस फूड खा रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे बहोत ज्यादा बिल्डिंगे नजर आ रही हैं।

ये एक बेकरी है और यहां पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है।